उसके बाहर में एक कर है जहां पर बहुत सारे दुकान एक दुकान है उसमें बहुत सारे--

दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं उसके पीछे में एक बिल्डिंग लग लग खड़ी हुई है बिल्डिंग बन रही है।

बहोत सारी वहां पे मटीया भी नजर आ रही है पीछे में मकान नजर आ रही--

से भी कई ज्यादा मात्रा में बतिया लगे हुए बहुत सारी बतिया जली हुई भी है बहुत सारी भी बुझी हुई है।

उसके बगल में जमीन है उसके बगल में जमीन के पास बहोत सारे समाने रखी हुई है।

यह चित्र एक बर्थडे पार्टी की है जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

यहां पे हरा रंग का कालीन बिछा हुआ है।

कांच की ऊपर कांच की सीसी में लग सीसी है उसके पास आसमानी रंग की दीवार पेंट की हुऐ है।

बगल में पौधे लगे हुए हैं गाड़ी के बगल में कार मोटरसाइकिल और बस लगी हुई है।

यहां पे लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसमें पीले कलर के लिखे हुए है।

पोट के ऊपर में एक पीला रंग की तर तिरपाल बंधी हुई है ऊपर में पॉट लट लटक भी रही है।

वहां पर एक खंभा गाड़ी हुई--

वहां पे जितने भी लोग हैं वो अपने अपने कामें कर रहे मछलियां बना रहे हैं वहां पर एक आदमी हाफ गंजी में बैठे हुए हैं।

यह नदी के पीछे में बहुत ज्यादा कुहेसा घीरे हुए पौधे नजर आ रहे हैं।

उसने अपनी मांगों में सेंदूर लगाई हुई है।

टंकी के बगल में हरे रंग की पी तिरपाल है वहां पर बहुत सारे पौधे पेड़ लगे हुए--

के बगल में आसमानी रंग की एक धार है।

यह चित्र एक हेलमेट कंपनी की है जहां पर बहोत अधिक मात्रा में हेलमेट लगी हुई है।

कांच के शीशे लगे हुए हैं उस दीवाल पे उस हॉस्पिटल में आधे दिवाल में टाइल्स लगी हुए है।

जिसमें लाल रंग का कलर टेप या फिर पेपर चिपका हुआ--

यह चित्र एक हसप बिल्डिंग की है जहां पर बहोत सारे लोगे के खड़े हैं।

के बगल में एक टेबल में बहुत सारे कोल्डड्रिंकस और पानी रखी हुई है।

उसके ऊपर में रेक बने हुए हैं रेक में कार्टूनों की समानें रखी हुई है।

यह चित्र एक नदी की है नदी में दो कबूतरे बैठे बत्तख बैठे हुए हैं वहां पर--

वहां पर बहुत सारे दूर दूर तक पानिया नजर आ रही है दूर तक पत्ते नजर आ रहे हैं।